यह एक पार्क का दृश्य लग रहा हैसामने की तरफ एक घर बना हुआ हैऊपर की तरफ टिन की शेड रखी हुई है।

यहाँ पे कोई काम चल रहा है एक क्रेन खड़ा हुआ है क्रेन से में कोई सामन बांधके ऊपर की तरफ खीचा जा रहा है।

साथ हि अनदर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ --

यह एक सिलाई कौशल केंद्र है जो की सिलाई कौशल केंद्र साहिबगंज में है स्नेह डोर के नाम से है।

और उपर आसमानभी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग सफेद है।